यहां पे एक गाड़ी का शोरूम है जहां पे बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई हैं।

यहां पर एक लाल रंग का घर है जहां पर एक आदमी पौधों में पानी दे रहा है।

और बहुत सारे यहां पौधे हैं एक आदमी खड़ा है और बहुत सारे धातु के लगाए हुए है जो गेट जैसा बनाया हुआ हैं।

और एक लंबा सा छड़ी है जो कोना में लगाया हुआ है और रैक है।

ऊपर छत में लाइटिंग किया हुआ छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब हैं।

वो चोंख चोंख जैसा है और एथी लाइट बर रहा है।

और भी दाहिने साइड में बहुत सारे फोटो चिपकाये हुए है।

जो कुछ किसी काम के लिए खड़े होंगे बस है घर है लाइट है लाइट वाला खंबा है।

इस फोटो ने दिख रहा की एक हॉल है हॉल में बहुत सारे आदमी बैठे हुए है जैसे लड़का लड़की।

इस हाल में दो खिड़की है दो गेट हैं जो हरे रंग का पेंट किया हुआ है बहुत सारे कुर्सी है।

इस फोटो में दिख रहा है कि बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं जैसे रेस्टोरेंट में हैं।

और रूम के बगल में एक खंबा है ज़ो खंबे से दीवार को अटैच किया हुआ है।

यह एक दवा की दुकान हैजिसमें छत में लाइट लगा हुआ है रैक में लाल कलर का पट्टी बना हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक दुकान है जहां पर किताब कॉपी कलम बेचने वाला है एक कुर्सी है एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

और टेबुल को पकड़े हुए हैं और एक आदमी खड़ा है जो कोई सामान दे रहा है।